इस इमेज में शादी का कुछ प्रोग्राम दिखाया गया है और यहा पर एक बाइक खड़ी है जिसके--

यह एक मशीन है जिस के बटन है और एक मशीन के अन्दर जो नट बोल्ट होते है वो भी दिखाय दे रहे है।

एक गोल गोल राउंड का कुछ दिखाई देता है रेड रेड कलर का और एक बटन है जिससे ये मशीन चालू होती है।